और चौकोर टाइप का आ एक कुईया बना हुआ हैं।

और स्कूली बच्चे है जो की कुछ प्रोजेट बना रहै है।